जिस पे बाजार लिखा हुआ है और एम बाजार भी लिखा हुआ है।

पीछे की साइड दो बस भी हैं जो पिले कलर की है ।

यहाँ पे कुछ बच्चें हैं जिन्होंने सफ़ेद और लाल कलर की ड्रेसेस पहनी हुई हैं।

और यहाँ पे बहुत सारी कुर्सियाँ भी हैं जो सफ़ेद और लाल कलर के कपड़ों से ढकी हुई हैं।

यहाँ पे साइड में एक लड़का खड़ा है जिसने पीछे बैग टंगा हुआ है |

पीछे की साइड एक बरनी भी रखी हुई है।

यहाँ पे जो मछली बेच रहे है उसके हाथ में तौल काटा भी है और एक पानी का डब्बा भी रखा हुआ है।

यह इमेज एक ईमारत की है जिस पे पिस्ता कलर किया हुआ है ।

इस इमेज में यहाँ पे सड़क नजर आ रही है।

एक महिला है एक पुरुष है।

यहाँ पर बहुत सारी सब्जियों की दुकान हैं।

यहाँ पे फाइल्स भी दिख रही है।